पानी बहुत ह यहाँ पर ब्रिज बनल ह ब्रिज ह ब्रिज के निचे -ब्रिज के नीचे पुल टाइप के बनल ह एगो नाव ह तीन गो आदमी ह।